औरन हिरन सोलर शैंपू देख रहे हैं नीचे बहोत सारे बा--

दिखाई दे रही हैं ऊपर नीला आसमान दिख रहा है।

बांधे हुए हैं पीछे दीवाल है जो पीले कलर की दिख रही है और पीछे बहुत सारे पेड़ --

लगी हुई है पीछे बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं और एक --

ए_सी दिख रहा है दीवाल फिर सफेद कलर की दिख रही --

दिख रही है और इसमें ऊपर पीले कलर की दीवाल है जिस पर --

सामने एक सड़क दिख रही है जो सफेद कलर की है दोनों साइड --

हुआ है नीचे कुछ डमी रखे हैं जो साड़ी लहंगे पहने हुए हैं और ऊपर बहुत सारी साड़ियाँ --

दो खंभे और बीच में डी_पी रखी हुई दिख रही है।

बने हुए हैं जो रंग बिरंगे हैं और कुछ लड़के लड़कियां--

नीली और ऑरेंज कलर की दिख रही है जिस पर भारत पेट्रोलियम लिखा है ऊपर नीला सफेद--

और हाथ में घड़ी बंधी है पीछे पत्थरों का ऊंचा चबूतरा बना है जो काले कलर के--

नीले-पीले कलर का कचडे का वो ड्रम दिख रहा है और--

सामने एक हॉल है जिसमें बहोत सारे चेम्बर बने हुए है जिनके आगे कुर्सियां--

काँच का गेट है जिस पर कुछ पोस्टर लगे हुए हैं साइड में ऊपर छत पर बहुत से पंखे दिख रहे हैं और लाइट दिख रही हैं।

रहे हैं ऊपर नीला और सफेद आसमान दिख रहा है बाहर एक स्कूटी और--